पार्क जैसा है जहा पे पत्थरे है और पत्थर के साथ मूर्तिया है आसपास भूरे पेड़ है सामने खाली जगह है।

टेबल पे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है साथ में डेमो बिल्डिंग है बहुत सारे जोकि स्किन कलर के है।

और यहाँ पे--

यहां पे दो अ तीन मुर्गी खड़े हुए है साईड मे पेड़ है सामने खेती दिख रही है और मुर्गे के साईड मे एक गमला रखा हुआ है।